उस पे कुछ कुछ लगा हुआ है दिख रहा है साइड में तीन चेयर लगी हुई है और पीछे ऊपर छत दिख रही है।

और पीछे अंधेरा दिख रहा है कांच लगा हुआ है।

ब्लू टी-शर्ट मे एक आदमी रोड पे जा रहा है पीछे एक शेड लगा हुआ है और बोर्ड लगा है और एक झंडा लगा हुआ दिख रहा है।

टेबल दिख रही है टेबल पे बोतल रखी हुई है और एक कटोरे में चम्मच और कटोरा रखा हुआ है और कुछ खाने का है और दो लोग बैठे हैं।